किंग है पूल है आदमी है शटर है ब्लैक कलर का पेंट है वाइट गुब्बारे है आदमी है कुर्सी है रेड कुर्सी है।